boss desktop के इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम boss desktop environment के साथ परिचित होंगे
यहाँ मैं विस्तृत भारतीय भाषा समर्थन और पैकेजेज़ के साथ boss लिनक्स 342 उपयोग कर रही हूँ
मैं slide को minimize करती हूँ
आप यहाँ जो देख रहे हैं वो boss desktop है
ऊपर बाएं हाथ की तरफ के कोने पर आप main menu देख सकते हैं
इस menu को खोलने के लिए अपने keyboard पर एकसाथ alt + f1 कीज़ दबाएं
वैकल्पिक रूप से applications menu पर click करें
applications menu सारी स्थापित applications को वर्गीकृत तरीके में रखता है
इस applications menu में कुछ महत्वपूर्ण applications के साथ परिचित होते हैं
अतः अब applications applications accessories accessories calculator calculator पर जाते हैं
calculator अंकगणितीय arithmetic वैज्ञानिक scientific और वित्तीय financial गणनाओं को क्रियान्वित करने में मदद करता है
इस पर क्लिक करके calculator को खोलते हैं
कुछ सरल गणनाओं की कोशिश करते हैं
type करें 5 * इनटू 8 और equals to साइन दबाएं
equals to साइन दबाने के बजाय आप enter की भी दबा सकते हैं
close button दबाकर इस calculator से exit करें
अब एक अन्य application पर जाते हैं
इसके लिए वापस applications पर जाएँ फिर accessories पर जाएँ
accessories में gedit text editor पर क्लिक करके इसे खोलें
अतः अभी आप screen पर जो देखते हैं so gedit text editor है
यहाँ मैं कुछ text लिखती हूँ और इसे सेव करती हूँ
type करें hello world
इस file को सेव करने के लिए मैं crtl + s कीज़ दबा सकती हूँ या file पर जाकर फिर save पर click कर सकती हूँ
अब मैं file पर जाती हूँ और फिर save पर click करती हूँ
save as dialog box खुलता है
यह file के नाम और location के लिए पूछता है जिसमें यह सेव की जानी है
अतः मैं name में hello txt type करती हूँ और location के लिए मैं desktop चुनूँगी
save button पर click करें
अब इस gedit window को बंद करें और जाँचें कि desktop पर हमारी file check हुई है या नहीं
अब desktop पर आते हैं और आप देख सकते हैं कि hello txt file यहाँ है
अतः हमारी text file सफलतापूर्वक so हो गयी है
मैं इस पर दो बार क्लिक करके इस file को खोलती हूँ
यहाँ हमारा text hello world है
हम gedit text editor में विभिन्न स्थानीय भाषाओँ में भी type कर सकते हैं
अब देखते हैं यह कैसे होता है
gedit text editor में ctrl + space bar दबाएं
आप सबसे नीचे दायें हाथ की तरफ एक छोटा सा box देख सकते हैं
इस पर click करें
hindi hindi
inscript चुनें
मैं hello world type करुँगी
आप देख सकते हैं कि text hindi inscript में बदल गया है
अब मैं hindi चुनूँगी फिर मैं phonetic चुनुँगी
मैं phonetics प्रयोग करके welcome type करुँगी
और आप देख सकते हैं कि शब्द welcome hindi में टाइप किया गया है
अब बदलाव को सेव करने के लिए save पर click करें
अब इस text editor को बंद करते हैं और accessories से एक अन्य महत्वपूर्ण application देखते हैं जोकि terminal है
वापस applications पर जाएँ accessories और फिर terminal
terminal command line कहलाता है क्योंकि आप यहाँ से computer को command यानी नियंत्रित कर सकते हैं वास्तव में यह gui से ज़्यादा शक्तिशाली है
अब terminal का अनुभव करने के लिए सरल command type करें
अतः type करें ls और enter दबाएं
आप आप देख सकते हैं यह वर्तमान कार्यरत यानी working directory में सारी files और folders की सूची बनाता है
यहाँ यह home folders से files और folders को दिखा रहा है
इस tutorial में आगे home देखेंगे कि home folder we है
terminal commands इस क्रम के आगामी लिनक्स spoken tutorials में अच्छी तरह से समझाए गए हैं
अब terminal को बंद करते हैं
अब एक अन्य application पर जाते हैं जो है iceweasel web browser
यह boss operating system पर default web browser है
applications internet iceweasel web browser पर click करें
iceweasel firefox का अन्य version है
यह browser प्रयोग करके आप अपने emails access कर सकते हैं या net पर कुछ जानकारी ढूंन्ढ सकते हैं
अब google site पर जाते हैं
address bar पर जाने के लिए shortcut की f6 है
या आप यहाँ address bar पर click कर सकते हैं
मैं type करुँगी www google co in
जैसे ही मैं type करती हूँ iceweasel कुछ संभावनाएं सुझा सकता है
आप इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं
या पूरा address type करना जारी रखें और enter दबाएं
अब हम google search पेज पर हैं अब search bar में spoken tutorial type करते हैं
spoken tutorial website पहले विकल्प की तरह सूचीबद्ध है अब इस पर click करते हैं
यह spoken tutorial home पेज खोलेगा
अतः इसे बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं
अब applications पर click करते हैं और फिर office पर जाते हैं
इस office menu में हमारे पास लिबर office विकल्प हैं जैसे writer calc और impress
ये libreoffice suite suite के word processor spreadsheet और प्रदर्शन घटक हैं
spoken tutorial website पर इन विषयों पर spoken tutorials उपलब्ध हैं हम सुझाते हैं कि आप इनका अन्वेषण करें
आगे applications में sound & video menu को जांचते हैं
यह विकल्प boss ऑपरेटिंग सिस्टम में भिन्न player विकल्पों को सूचीबद्ध करता है
आप अपने video या audio को play करने के लिए इनमें से किसी एक विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं
अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं इस समय places menu पर जाते हैं
यहाँ पहला विकल्प home folder है
इसको खोलते हैं
boss os में प्रत्येक यूज़र एक unique यानी अद्वितीय home folder रखता है
home कह सकते हैं कि home folder हमारा घर यानी कि home है जहाँ home files और folders संचित कर सकते हैं
हमारी अनुमति के बिना दूसरे उन्हें नहीं देख सकते
file permissions यानी अनुमति पर अधिक जानकारी spoken tutorial website पर लिनक्स spoken tutorial में उपलब्ध है
हमारे home folder में home अन्य folders जैसे desktop documents downloads music आदि देख सकते हैं
लिनक्स में सबकुछ एक file है
desktop folder पर दो बार क्लिक करके इसको खोलें
hey देख सकते हैं कि वही hello txt file जो हमने जीएडिट text editor से सेव की थी यहाँ है
अतः यह folder और desktop समान हैं
मैं अभी यह folder बंद करुँगी
अब desktop theme को बदलना सीखते हैं
दायीं तरफ के कोने पर जाएँ और यहाँ प्रदर्शित यूज़रनेम पर click करें
मेरी स्थिति में यूज़रनेम spoken है अतः मैं spoken पर click करुँगी
अब system settings विकल्प पर जाते हैं
system settings dialog box खुलता है
background icon पर click करें
प्रदर्शित सूची से कोई background चुनें
यह आपके नए background की तरह दिखाई देगा
इस dialog box को बंद करें
अब हम applications menu में उपलब्ध system tools विकल्प पर आएंगे
यह विकल्प अन्य महत्वपूर्ण विकल्प रखता है जो आपके desktop और अनेक applications का प्रबंधन करने में मदद करता है
system tools administration और synaptic package manager पर click करें
यह तुरंत ही प्रमाणीकरण के लिए आपसे admin password पूछेगा
admin password में type करें और authenticate button पर click करें
synaptic package manager का उपयोग कैसे करें का विवरण इस क्रम में एक अलग tutorial में उपलब्ध है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
इसको सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने निम्न सीखा
boss desktop main menu
और boss लिनक्स os की कई महत्वपूर्ण विशेषतायें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
इस mission पर अधिक जानकरी नीचे दिए link पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद